जमीन पर बहुत बड़ा पीले कलर से पुता हुआ एक टायर नजर आ रहा है और दो बॉक्स जैसे पीले और काले कलर के दिखाई दे रहे हैं।

जिसको ये दुकान की बाहर की तरफ एक तरफ मीटर और एक तरफ ऊपर की तरफ एसी का एग्जिट फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में फूलो की झड़ी जैसे पेड़ो पर कुछ पेड़ फूल लगे हुए हैं जिसपर एक टी-शर्ट लाल कलर के टी-शर्ट पहने--